उपर अभी बन रहा हैं पीछे पूरा--

ये एजुकेशन है ईमारत दुकान है यहाँ उपर पढाई वडाई टयूशन व्युसन पढ़ाते है बोर्ड बना है।

ये बस स्टैंड है सुकमा का छत्तीसगढ़ बस्तर जिला सुकमा दो ऑटो लोग खड़ा है रा रात का समय है।

--पर अच्छा खासा घर है।

फिजिक्स का क्लास चल रहा है सब बच्चे पढाई कर रहे है सामने ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है और बेसिन है हाथ धोने के लिए लाइट सब लगा है चार एक चार पांच छेह सात लोग पढाई कर रहें है बैठ के--